केनरा बैंक के नीला रंग के पोस्ट हे कवर्धा शाखा लिखे हे ।

स्कूल आए शासकीय नवीन महाविद्यालय लिखे हेे की परिया लिखे हे एकलव्य अकेडमी पईफरिया लिखे हे।

यीशु मती वाला हे अउ चार पाँच गुल-गुल गुलदस्ता हे।

अउ बढ़िया दिखत हे मशीन ह बड़े हे।

विद्या ददाति विनियम लिखे हे बढ़िया दिखत हे गाड़ी हे पौधा--

दु तीन मंजिल घर हे सफेद रंग हे बड़िया बड़े बड़े हे वही तीर ह--

अऊ टेबल हे बड़िया दिखत हे सफेद हे ओकर साइड साइड हा एला बड़िहा रख के फोटो खिचे हे ।